editing existing content पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे inline editing
ckeditor का उपयोग और
ckeditor को कंफिगर करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर का उपयोग कर रही हूँ
आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
अपनी website खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
पहले हम inline editing के बारे में सीखेंगे
title पर cursor ले जाएँ दाईं ओर हम एक pencil icon देखेंगे
जब हम title पर जाते हैं तो यह हमें block को कंफिगर करने के लिए पूछता है
configure block पर click करें block पेज टाइटल के लिए सामान्य block है
इसको बदलने पर प्रत्येक node में पेज टाइटल्स के प्रदर्शन का तरीका बदल जायेगा
go back to site पर click करें pencil पर कर्सर go जाएं और configure block पर click करें
यदि आप tabs बदलना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ बदल सकते हैं
मैं इसे ऐसे ही रखूंगी
back to site पर click करें
अब content area में pencil पर click करें
आप तीन options– देखेंगेquick edit edit और delete
quick edit inline window में front end editing है
edit node के लिए main main editing window पर वापस ले जाता है
delete confirmation के बाद node को डिलीट करेगा
inline fashion में अपने node को edit करने के लिए quick edit पर click करें
यह हमें व्यक्तिगत node के विभिन्न भागों में ले जाता है
जब हम इस पर click करते हैं तो हम अधिक कंटेंट जोडने में source को देखने में और यहाँ तक कि कुछ text को bold करने में सक्षम होते हैं
हमारे द्वारा बदलाव करने पर drupal हमें सेव करने के लिए कहता है node को अपडेट करने के लिए save पर click करें
अब welcome to drupalville नामक article node को बदलना सीखते हैं
quick edit पर click करें ध्यान दें कि यहाँ front end में title और body fields edit करने योग्य हैं
लेकिन हम image को edit नहीं कर सकते हैं
image को edit करने के लिए हमें edit screen पर पर जाने की आवश्यकता है
अब हम body में बदलाव कर सकते हैं और इसे save सकते हैं
मैं quick edit window में tags को भी edit कर सकता हूँ
drupal में front end editing सामान्य editing के लिए योग्य है
कंटेंट को किसी भी समय अपडेट करने के लिए edit टैब drupal का एक बहुत अच्छा feature है
wysiwyg editor पहले कई बार उल्लेखित किया गया है
इसका अर्थ है what you see is what you get
wysiwyg editor काफी उपयोगी है
text format को full html में बदलें
यह हमें wysiwyg editor में उपलब्ध formatting options के बारे में बतायेगा
drupal में ckeditor drupal core के साथ आता है
यह default रूप से on रहता है और यह कंफिगर करने के योग्य है
एक नजर डालें welcome to our site text को highlight करें
format को normal से heading 2 में बदलें
तुरंत drupal एक प्रीव्यू देता है कि text कैसा दिखेगा
यह theme और cascading style sheets या css द्वारा निर्धारित है जो कि हमें theme देता है
यहाँ कुछ और text जोडें editing drupal nodes is really fun!
अब उस text को highlight करें italics को off करें और text के लिए hyperlink बनाएं
यहाँ दर्शाता है
mouse घुमाएं और देखें कि text अब hyperlinked हो गया है
hyperlink को हटाने के लिए text को highlight करें और unlink पर click करें
बदलाव को undo करने के लिए ctrl + z दबाएँ
हम यहाँ bullets और numbering icons पर क्लिक करके ordered और unordered सूची को भी जोड सकते हैं
unordered list पर click करें फिर bulletsone two three जोडें
add ordered list पर click करें और one two और three जोडें
block quotes का उपयोग करने के लिए कुछ text highlight करें और block quote link पर click करें
फिर से formatting हमारे theme द्वारा प्रबंधित है
हम आसानी से इमैज भी प्रविष्ट कर सकते हैं मैंने इस file को चुना जिसे मैंने पहले node में uploaded किया था
alternate text field में मैं drupal logo type करूँगी
align में मैं right चुनूंगी यदि आप चाहते हैं तो एक caption जोडें
आखिर में save पर click करें
यह अब body के अंदर node में जुड गया है image पर जाएँ click करें और इसे सही position पर drag करें यदि आप चाहते हों
हमें पहले थोडा अपने editing window का size बदलना होगा ताकि हम अपनी image को जरूरत अनुसार कहीं भी drag कर सकें
image पर कर्सर घुमाना हमें अपनी इमैजेस के साइज को बदलने की अनुमति देता है
drupal node में इमैजेस जोडने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी इमैजेस सही sized और formatted की हुई हों
यह node पर कंटेंट को अलाइन करने में काफी मदद करेगा
हम एक table या horizontal line जोड सकते हैं
और blocks दिखा सकते हैं जो हमने अपने node में बनाये हैं
अत: यहाँ है h2 block block code paragraph tag आदि
यदि आप html को जानते हैं तो आप इस icon पर क्लिक करके source को देख सकते हैं
आगे बढने से पहले इन प्रत्येक options को देख लें
ध्यान दें कि हमने full html on किया है
यदि html इसे basic html में बदलते हैं तो यह हमें चैतावनी देता है
यहाँ कंटेंट के हमेशा के लिए मिटने या डिलीट होने की संभावना है
हमने javascript iframe youtube video google map या कुछ इस तरह प्रविष्ट किया है
basic html में बदलने के कारण drupal इस कंटेंट को हटा देगा
इस तरह की समस्याओं को नजर अंदाज करने के लिए केवल वही रखें जिसकी आपको वास्तविक रूप से आवश्यकता है
settings में बदलावों को निरस्त करें तो हम कुछ भी नहीं खोयेंगे
यह ckeditor का त्वरित अवलोकन है जो drupal में आता है
और हमने सीखा कि इसे customize कैसे करें
अब save and keep published पर click करें
संशोधित node प्रदर्शित होता है
अब ckeditor को कंफिगर करना सीखते हैं
ऊपर configuration पर click करें
अब text formats and editors पर click करें
html देखेंगे कि basic html और full html ckeditor का उपयोग करता है
और ये authenticated user और administrator को असाइन होते हैं
यहाँ दो unique user roles हैं
drupal में हमारे यूजर के भिन्न roles होते हैं और प्रत्येक roles को permissions दी गई होती है
यहाँ authenticated user और administrator द्वारा basic html उपयोग किया जा सकता है
ckeditor को इन 2 roles के लिए असाइन किया गया है
उसीतरह full html को एक administrator द्वारा उपयोग किया जा सकता है
अब basic html के लिए ckeditor को check करें
configure पर click करें और आप इसको भिन्न roles के लिए असाइन करने में सक्षम होंगे
किसी भी text editor को असाइन करें जो आप चाहते हैं और buttons के लिए उन्हें permissions दें जो उन्हें उपयोग करने की अनुमति देते हैं
ध्यान दें यह basic html text format में authenticated user के लिए active toolbar है
क्या यदि हम अपने active toolbar में इन buttons में से एक को जोडना चाहते हैं यह बहुत आसान है
available buttons से paste from word icon चुनें
फिर mouse को click करें और तब तक drag करें जब तक कि एक नीले रंग का box नहीं खुलता है जहाँ हम icon जोड सकते हैं
नया group जोडने के लिए add group button पर click करें इसको copy and paste name दें और apply पर click करें
अब paste from word icon को copy and paste section में click और drag करें
add सभी paste icons को यहाँ जोडें
तो हमने अपने basic html format के लिए अपने bar में तीन नयें buttons जोड दिये हैं
paste icons वे हैं जिनकी प्रत्येक toolbar में आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकतर text files से copy paste होता है
हम inlineimages भी upload करेंगे और किसी भी चौडाई और ऊँचाई के साथ अधिकतम 32mb size की file upload करेंगे
आपके installation में अधिकतम size भिन्न हो सकता है
हम अपने प्राथमिकता के आधार पर यहाँ कोई भी settings बदल सकते हैं
हम हमेशा url को link में बदलना चाहते हैं link स्वयं करने के बजाय
हम यह convert urls into links option पर क्लिक करके कर सकते हैं
यहाँ हमारे पास filter settings भी है limit allowed html tags पर click करें
अब html html tags जोडने में सक्षम होंगे जिसे html उपयोग कर सकते हैं जब html source पर देखते हैं
अत: यह वास्तव में प्रभावशाली wysiwyg editor है और यह कंफिगिरेशन भाग है
अपने सभी बदलाव करने के बाद save configuration button पर click करें
अब अपना content देखते हैं
welcome to drupalville node में edit option पर click करें
ध्यान दें कि क्योंकि हमने full html on किया है इसलिए कुछ भी नहीं बदला है
all इसे basic html में बदलें सभी बदलाव यहाँ मौजूद हैं
हालांकि मैं अब अपने blocks नहीं देख सकती paste icons उपलब्ध हैं
मैं इस image को यहाँ नहीं चाहती हूँ तो मैं image पर क्लिक करके और इसे keyboard पर backspace या delete की दबाकर डिलीट करूँगी
save and keep published पर click करें
फिर से configuration पर click करें नीचे scroll करें औऱ text formats and editor पर click करें
इस समय html full html toolbar कंफिगर करते हैं
ध्यान दें कि हमें यहाँ कुछ अधिक buttons मिले हैं किंतु paste icons नहीं मिला
show group names पर click करें और add दूसरी line में dd group पर click करें
इसे copy and paste name दें अब name इसे अपने copy and paste section में drag और paste करेंगे
इसी प्रकार यहाँ नीचे हमारे पास ये सभी options फिर से हैं अभी के लिए save configuration button पर click करें
फिर से अपने welcome to drupalville पर जाएँ और इसे full html में बदलें
continue पर click करें और अब हम buttons की दो पंक्तियाँ देखते हैं
इसका मतलब है कि हमारा editor set हो गया है
ckeditor पर कुछ समय काम करें और सुनिश्चत कर लें कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए है संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद